भरा है पानी बोहोत सुंदर पानी दिख रहा है। बोहोत बहो बड़ा पुल दिख रहा है। उसके आस-पास पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और जो बेड पे व्हाइट कलर की चादर डली हुई दिखाई दे रही। कुछ खिड़की दिखाई दे रही। बहोत बड़ी दिखाई दे रही जिसमें --

यहाँ एक स्पीकर ऑन दिखाई दे रहा है जहाँ कि कुछ कार्यक्रम चालू हुआ दिखाई दे रहा है और --

बहोत सुंदर सा लुक दिखाई दे रहा है। बहोत सारे स्टूडेंट खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ दुकानों के साइड में कुछ अ समान दिखाई दे रहा है जो कि लोग बेचने आए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समान बेच रहे हैं कोई खरीद रहे हैं और कोई बाइक जा रहे हैं।

कुछ गमले दिखाई दे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। उसमे फूल लगे हैं फ्लावर्स लगे हैं रेड कलर के ब्लू कलर के गुलाबी कलर के बाहोत सारे --

फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहोत बड़े-बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं और हवन में बहोत सारे समान दिखाई दे रहे हैं।

यहां घर बनाने का काम चालू दिखाई दे रहा है जो कि लोग कुछ समान ढो गिट्टी जैसे --

यहाँ बोहोत बड़ा स्तम्भ दिखाई दे रहा है जो कि येलो कलर का पैंट हुआ दिखाई दे रहा है। बोहोत सुन्दर स्तम्भ दिखाई दे रहा है उसी की साइड में --

ये यहाँ एक कार दिखाई दे रही है जो कि व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैॅ और कुछ रेड कलर कि कुछ पट्टिया दिखाई दे रही हैं।

यह एक बोहोत बड़ी मंसिल दिखाई दे रही है जो कि रेड व्हाइट सॉरी व्हाइट कलर कि और --

और उसी के आसपस कुछ रोड भी दिखाई दे रही है। बोहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है और उसी के साइड में कुछ --

यहाँ एक व्हाइट कलर की मंजिल दिखाई दे रही है। जैसे घर जैसा दिखाई दे रहा है। उम वहां एक --

और कुछ आस-पास उसी के आस-पास कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और जो कि मंदिर में कुछ भगवान जी स्थापित हुए दिखाई दे रहे है और जो वह वहां का टेबल वगैरा सब गोल्ड का दिखाई दे रहा है।

दे रहे हैं। बहुत अच्छा रूम दिखाई दे रहा है जहां कि सब जगह कंप्युटर ही दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ बोहोत बड़ा कचरा दिखाई दे रहा है बोहोत बड़ा। उसके ऊपर बोहोत बड़ा वो परत जमी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ ये कुछ पहाड़िया- पहाड़िया दिखाई दे रही हैं और वहां पहाड़ियों के आस पास बहोत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहोत प्रकार-प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और बोहोत प्रिटी पौधे दिख रहे हैें और बोहोत सारे पौधे दिख रहे है बोहोत प्रकार-प्रकार के और छोटे-बड़े और पूरा पहाड़िया --

गेट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का गेट दिखाई दे रहा है और कुछ गेट गेट और कुछ --

खिड़कियां वगैराह दिखाई दे रही हैं और कुछ बाइकें भी दिख बाइक भी दिखाई दे रही हैं और कुछ चेयर वगैरह भी लगी हुई दिख --

यहाँ कुछ राजकीय उद्योग परीक्षण हरीपुर का कुछ दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और --

यहाँ स्कूल दिखाई दे स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही। बोहोत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ स्टूडेंट --

खड़े हुए दिखाई दे रहे है और कुछ टीचर स्टाफ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ टीचर कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे है। यहां प्रतियोगिता की --

बहोत बड़ी दिखाई दे रही है। जहां लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ रेड कलर के गेटे भी दिखाई दे रहे है और बहोत सुनसान सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और --

फ्लावर खरीदने के लिए आई है। इस दुकान में बहोत अच्छी फ्लावर है और बहोत बहोत ब्यूटी फ्लावर दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक अ रंगोली दिखाई दे रही है। एक ग्रीन कलर की रेड कलर की और येलो कलर की ब्लू कलर की --

कुछ वैन लाइट सब चारों दिखाई दे रही है।

यहाँ एक बाजार दिखाई दे रहा है। मार्केट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि पत्तागोभी ककड़ी मूली और कद्दू --

जहां कुछ नापने का काम चालू है। यहां एक कांटा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिससे बोरों में कुछ रखके कुछ नाप नपाई चालू हो रही है।

यहाँ एक गार्डन में बहोत सारे पौधे दिखाई दे रही हो और सूर्य का प्रकाश आते हुए दिखाई दे रहा और बच्चे कुछ खेलते हुए दिखाई दे रहे कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे है।

और कुछ टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बहोत सारे बहोत सारा बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। बहोत अच्छा-अच्छा चीजें दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है जो और उसी के आसपास कुछ बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ आस-पास कुछ पौधे दिखाई दे रहे है। बाउन्ड्री के आस-पास के बाद में पौधे दिखाई दे रहे है और पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और पौधे बहोत सारे दिखाई दे रहे है।